और यहां पर लाल से कलर से सजी हुई है लाल कलर हो रहा है।

एक लेडिस खड़ी है और यहां पर जेंस है और बच्चे है।

यहां पर हाथ धोने के वेश विशन है।

और यहां प बहुत अच्छे अच्छे पानी आ रहा है व ले सफेद पानी है।

पेड़ पौधे से हैं और यहां पर दो तीन स्टूल से पड़े हैं और यहां पर--

यहां पर एक गाडी खड़ी है बहुत सारी गाडी खड़ी है और एक लाल किला सा और --

यहां पर बहुत अच्छी लाइटें लगी हैं वहां पर पार्किंग है गाड़ियों की।

और सफेद गाड़ी से और यहां पर ब्लैक कलर की गाड़ी है और यहां पर एक पेंटा सा है।

पंप है। पंप पे भी मशीन दो हैं और यहां पर दो ही आदमी हैं और --

एक स्टूल सा पड़ा हुआ है जो की जस्टबीन रखे हुए है।

यहां पर दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी हैं यहां पर बहुत अच्छी--

और यहां पर एक बराबर में एक पंप और है।

और यहां पर एक गेट है बरे --

और गाड़ी का लग रहा है।

ये तो यहां पर पूजा से हो रही है और लेडिज बैठी है और एक यहां पर एक टोकरी सी धरी है।

और यहां पर फुलझड़ी सी है ऊपर फुलझड़ी सी लग रही है।

हरे से कलर की कुकड़ी है बहुत सारी और यहां पर निकल रहे हैं कुकड़ी के बहुत अच्छी--

बरबर में डोल सी लिकली है और यहां पर हरी सी कुकड़ी है।

यहां पर दुकान सी है।

और बराबर में टाइल्स भी लगी है।

और पेंटिंग सील छप रही है।

यहां पर दो तीन लाल कलर के और एक बराबर में डस्टबिन सा एक बाल्टी रख--

और यहां पर बहुत सारी मशीन है बहुत बड़ी मशीन है और फैक्ट्री सी है यहां पर।

कछुआ पड़ा है यहां पर।

यहां पर एक पैलेस है वो पहले से सज रहा है बहुत अच्छा लड़ी होते हैं।

और यहां पर पेड्डो पे लाइट लग रही है और यहां पर बरब्बर में--

और यहां पे बाहर एक बोर्ड सा लग रहा हूँ और यहां पर बाईकें खड़ी है बहुत सारी।

और पत्थल सी रख्या बराबर में हल्का हल्का पानी आ रहा है पहाड़ों --

और कोई पानी सा आ रहा हैं यहां पर।

और यहां पर बहोत सारी भिड़ है।

और यहां पर पेड़ से थोड़े से पार्क सा बना है नीचे।

जाने का है पीच्छे और यहां पर --

यहां पर एक गार्डन सा है वह गार्डन सा बहुत अच्छा सज रहा है।

और यहां पर एक मे यहां पर एक में सी की थी है।

बिल्डिंगस में बहुत सारे हुए हैं कमरे से और यहां पर--

और यहां पर दो टैंक धरे हैं ऊपर--

यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है।

और यहां पर एक बोर्ड से नाम से लिख रहा है यहां पर सामने गेट पे।

यहां पर भीतर भी आदमी से--

और यहां पर एक गाड़ी खड़ी है।

और यहां पर बराबर में दो तीन पेड़ से और ईट सी बिछ रही है।

और यहां पर तीन आदमी खड़े हैं।

और यहां पर एक बराब्बर में मोटरसाइकिल खड़ी है।

दुकान सी और यहां पर बोर्ड सा लग रहा और यहां पर एक मास्टर है बहुत सारे और यहां पर मास्क लगा रखा है और यहां पर बच्चे हैं।